फोटो में एक गार्डन है।

जिसमें बहुत सारे फूल और पेड़ लगाया हुआ है.

दो मैकानिक उस कार को ठीक करने में लगे हुए हैं.

चेम्बर मे बहोत सारी मेसिन लगाया हुआ हे.

कॉस्मेटिक दुकान में बहुत सारे कॉस्मेटिक चीज पाया जा रहा है।

इस फोटो में एक फूल का बगीचा देख पा रहे हैं।

हम फोटो में एक थाना देख पा रहे हैं।

थाने मे समाज के लिए बोहत काम किया जाता हे.

के बाहर एक गाड़ी भी है।

इस फोटो में हमें एक गोल्फ का मैदान देख पा रहे हैं।

एक घर के बाहर गेट लग जा रहा है.

गेट में बहुत सारे फूल सजा हुआ है.

लाल रंग का मेट भी है.

स्टेज में बोहोत सारे छोटे छोटे बच्चे डेन्स करते हुए नज़र आ रहा है.

बाजार में बहुत सारे दुकानें हैं।

एक बड़ा सा मछली है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है.

टेबिल का जो बोर्डर है।

वो देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं।

घाट को फालिश किया गया है।

बस के ऊपर बहुत सारे लोग चढ़े हुए हैं.

बस के अंदर भी बहोत भीड़ है.

एक आदमी जो लाल शर्ट पहेना हुआ है वो भी शायद बस पे उठ चढ़ेगा.

हम इधर एक सैलून का दुकान देख पा रहे हैं।

इस सलून के दूकान के उपर हिंदी में लिखा हुआ है बाल दाढ़ी.

चारिन दुकान के ऊपर लिखा हुआ है सपा एंड सैलून

इस फोटो में हम यह स्कूल को देख पा रहे हैं।

इस्टेज में बहुत सारे लड़के और लड़की डांस कर रहे हैं।

इस बिच मे एक कैफ़े भी हे जिसका नाम हे बिच कैफ ।

बीच में बोहोत सारे लोग आये हुए हैं.

पेंडल को बहोत अच्छे तरह से सजाया गया है पेंडल के बाहर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं।

एक आदमी ऊपर उंगली कर रहा है.

इस फोटो में हम एक दुकान देख पा रहे हैं दुकान का नाम है टेक्नो मिशन मिशनरीज एंड टूल्स ।

पार्क में बच्चे खेलते हुए देख दिखा जा रहा है.

इस स्टेशन में एक ट्रेन रुका हुआ है.

बेडरूम में दो बेड है।

बेडरूम के ऊपर दो-तीन लाइट लगाया हुआ है।

आदमी अपने भेन को ले-लेके आ रहा है.

छत बनाने के लिए काड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

इस फोटो में हम एक जिम सेंटर देख पा रहे हैं।